यह एक खाने की प्लेट है और खाने में बिरयानी और चावल रखे गए हैं तथा टेबल्स पर टिशू पेपर भी रखे गए हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और ये छत भी लगी डली है।

तथा दो व्यक्ति चल रहे हैं और यह फन किन डैम का गेमिंग जोन है।

जिसके सामने एच_डी_एफ_सी बैंक भी है।

जीसके बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है और बीच में फूल पौधों से कुछ रोड पर फूल बने हुए हैं।